ये जो दुकान में सेल्समैन है अपने दोस्त के साथ सेल्फी निकाल रहा है ।

यहां पे एक अह दो एक आदमी दोनों पैर--

ये आ ये ऑफिस दिखाई दे रहा है यहां पे अलग अलग--

और वेटिंग जो रूम दिखाई दे रहा है यहां पे आदमी लोग बैठे है कोई फोन पर बात कर रहे कोई आराम कर रहे हैं।